बात करें इस दूसरे पिक्चर की तो यहाँ पे हमारे सामने एक महाविद्यालय दिखाई दे रहा है हमको जो कि--

एक दूसरे पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने--

बहुत खूबसूरत सा दिखाई देने वाला है दोस्तों हम ये देख सकते हैं।

दूसरे पिक्चर की अगर बात करें तो हमारे सामने--

लोग यहाँ हर वक्त खड़े रहते होंगे भीड़ लगाकर।

बहुत छोटी भी मछलियां दिखाई दे रही है ये लग रहा है जैसे मानो मछली की--

बात करें अगले पिक्चर की तो यहाँ हमारे सामने एक शटर खुला हुआ है मानो ऐसा लग रहा है कि ये कोई हॉस्पिटल की पिक्चर है।

साफ़ सफाई है लोग का तो अभी देखना नहीं हो रहा है।

लोग जो है नाच गाने को बहोत ही अच्छा मानते हैं और ये अच्छी पिक्चर --

दुकान बहुत खूबसूरत है बहुत प्रकार से सजाया गया है।

एक दूसरे पिक्चर की बात करे तो यहां हमें एक व्यक्ति फोटो खिंचवाता हुआ नजर आ रहा है।

ऐसा लग रहा है जैसे उस दौरान है जिस समय हमारे यहां महामारी फैली हुई थी और बच्चे जो है सतर्कता से अपना काम कर--

भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है दोस्तों ये तो हम अच्छे से जानते हैं रिलायंस धीरूभाई अंबानी की कंपनी है।

यहाँ पस मिक्सी भी रखी हुई है जो कि मसाला पीसने के काम आती है।

हमको ऐसे दस ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं ये ट्रांसफार्मर बिजली उत्पादन करने के लिए--